रूम में एक बेड भी लगाया गया हैं बेड का बिस्तर व्हाईट कलर की हैं उसके ऊपर एक कंबल भी रखा हुआ हैं जो रंग बिरंगा है।

आस पास के क्षेत्र में लाइटिंग बहुत ही अच्छा से किया गया है एक छोटा सा मंदिर दिखाया गया है।

छोटा सा लड़का है जो खड़ा है वो चप्पल पहन के खड़ा है। आसपास का क्षेत्र में बहुत सारे सामान रखी गई --

आस पास के क्षेत्र में बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया गया है।

इसके साइड में बहुत सारे कलम भी रखा गया है जो अलग अलग रंग की हैं।

इस फोटो में एक बहुत ही साफ सुथरा कमरा को दिखाया गया बहुत अच्छा पैलेस हैं।

और आसपास में लाइटिंग बहुत ही अच्छे से किया गया है। नीचे का फर्श में मार्बल का प्रयोग किया गया है। और आसपास का क्षेत्र में शीशा का प्रयोग ज्यादातर किया गया है।

यह बहुत ही अच्छा सुंदर पैलेस है जिसमें हरा रंग का ज्यादातर यूज किया गया है।

बिल्डिंग के अंदर में बहुत ही अंधेरा पन दिख रहा है बहुत सारी खिड़कियां है।

इस फोटो में एक ढाबा दिखाया गया हैजिसका नाम ही श्री साई बाबा का ढाबा।

होटल के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं एक व्यक्ति खड़ा है तो कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस फोटो में श्री हॉस्पिटल को दिखाया गया है श्री हॉस्पिटल बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

यह दुकान रोड के किनारे स्थित है दुकान के जस्ट बगल में एक कुर्सी लगी हुई है जो रेड कलर की है।

इसके अंदर में दो व्यक्ति को दिखाया गया है एक व्यक्ति इसके बाहर में है।

इस फोटो में बहुत बड़ा घर दिखाया गया है इसके बाहर में एक लड़का आते हुए नजर आ रहा है जोकि शर्ट और जींस पहना हुआ है।

यह एक पैलेस है। इसके चारों ओर बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है।

इस हार्डवेयर के अंदर की ओर जाते हुए एक व्यक्ति दिखाया गया है और एक व्यक्ति बाहर की ओर आते हुए दिख रहा है।

आसपास का क्षेत्र बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है रोड के अपोजिट साइड में एक व्यक्ति का पैर दिख रहा है।

रोड के अपोजिट साइड में बहुत सारे लोग हैं और छोटे छोटे घर भी हैं दो मंदिर को दिखाया गया है।

इमिंग पूल के बगल में एक व्यक्ति जाते हुए दिखाया गया है।

फोटो में बहुत सारी मछलियां दिखाई गई हैकुछ छोटी मछली है तो कुछ बड़ी है।